जावा में टाइप कन्वर्जन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डेटा को एक डेटा टाइप से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं
कन्वर्जन के दो प्रकार होते हैं इम्प्लिसिट एवं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और स्ट्रिंग्स को नम्बर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल में हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में डेटा टाइप्स का ज्ञान होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाईट पर जाएँ
टाइप कन्वर्जन का अर्थ एक डेटा टाइप से दूसरे में बदलना है
देखते हैं कि यह कैसे किया जाता है
इक्लिप्स पर जाएँ
यहाँ हमारे पास शेष कोड के लिए आवश्यक इक्लिप्स इडे और स्केलेटन है
मैंने टाइपकनवर्जन नामक एक क्लास बना लिया है और इसमें मेन मेथड को शामिल कर लिया है
अब कुछ वैरिएबल निर्मित करते हैं
इंट आ इक्वल टू 5 फ्लोट ब ब इक्वल टू आ मैंने दो वैरिएबल बना लिए हैं
आ जो एक इंटीजर है और ब जो कि एक फ्लोट है
मैं एक फ्लोट वैरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ
देखते हैं कि अब फ्लोट वैरिएबल में क्या शामिल है
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि इंटीजर 5 फ्लोट 50 में बदल गया है इस प्रकार के कन्वर्जन को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा जाता है
जैसा कि नाम से स्पष्ट है मान स्वतः ही डेटा टाइप के अनुसार बदल जाता है
अब उसी विधि का प्रयोग करके फ्लोट को एक इंट में बदलते हैं
5 हटायें फ्लोट ब इक्वल टू 25फ़ और ब को आ में स्टोर करते हैं और आ की वैल्यू प्रिंट करता है
फ़ाइल को सेव करें
हम देखते हैं कि वहां एक एरर है
वह एरर मैसेज देता है टाइप mismatch कैनोट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टो इंट इसका अर्थ है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन केवल एक इंट से एक फ्लोट में संभव है दूसरी तरह से नहीं
एक फ्लोट को एक इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रयोग करना होगा
अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
हम ऐसे वैरिएबल के पहले परेन्थेसिस में एक इंट का प्रयोग करके करते हैं यह स्टेटमेंट बताता है कि वैरिएबल ब में डेटा को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया गया है और आ में स्टोर किया गया है
फाइल को सेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं फ्लोट की वैल्यू इंट में बदल गयी है
किन्तु डेटा टाइप के अनुकूल होने के लिए डेटा को तदनुसार बदल दिया गया है
एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रयोग इंट को फ्लोट में बदलने के लिए भी किया जा सकता है
पिछला उदाहरण लेते हैं इंट आ 5 फ्लोट ब ब आ systemoutप्रिंटलन हम इंटीजर के एक फ्लोट में कन्वर्जन के लिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि इंट वैल्यू को एक फ्लोट वैल्यू में बदल दिया गया है देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक कैरेक्टर को एक इंटीजर में बदलते हैं
इंट आ चार सी इक्वल टो सिंगल कोट्स में एम आ इक्वल टू सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम कैरेक्टर एम को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं इसे सेव और रन करते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट 109 है जो एम की एस्की वैल्यू है इसका अर्थ है जब एक चार को इंट में बदला जाता है इसकी एस्की वैल्यू को स्टोर किया जाता है
एक अंक के साथ यह करते हैं
चार सी अंक 5 इसे सेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट 53 है जो कैरेक्टर 5 की एस्की वैल्यू है
यह संख्या 5 नहीं है
संख्या प्राप्त करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग का प्रयोग करना होगा और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा
अब देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं
मेन फंक्शन को हटायें टाइप करें स्ट्रिंग शाइट हाइट का स्ट्रिंग रूप इक्वल टू डबल कोट्स में 6 इंट ह इक्वल टू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इंट ओएफ शाइट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ह फ़ाइल को सेव करें
मैंने वैल्यू 6 के साथ एक स्ट्रिंग वैरिएबल बना लिया है और मैं इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करने जा रही हूँ किन्तु हम देखते हैं वहां एक एरर है और यह एरर मैसेज प्रदर्शित करता है कैनोट कास्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टो इंट
इसका अर्थ स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए है हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं
यह अन्य मेथड्स द्वारा किया जाना चाहिए
उनका प्रयोग करते हैं इंट शाइट हटायें और टाइप करें इंटीजर डॉट पारसेंट शाइट फ़ाइल को सेव और रन करें हम देखते हैं कि वैल्यू को सफलतापूर्वक एक इंटीजर में बदल दिया गया है
ऐसा करने के लिए हम इंटीजर मोड्यूल के पारसेंट मेथड का प्रयोग करते हैं
अब देखते हैं कि क्या होता है यदि वहां एक से अधिक अंक हों जैसे 6543 फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि पुनः संख्या को शामिल करने वाली स्ट्रिंग को सफलतापूर्वक एक इंटीजर में बदल दिया गया है अब देखते हैं कि क्या होता है यदि स्ट्रिंग एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हों 6543 को 6543से बदलें
अतः हमारे पास स्ट्रिंग में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और हम इसे एक इंटीजर में बदल रहे हैं फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देखते हैं कि वहां एक एरर है यह होता है क्योंकि हम एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में नहीं बदल सकते हैं जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर शामिल है हमें इसे एक फ्लोट में बदलना होगा
देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है पहला डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए दूसरा हम फ्लोट पार्सफ्लोट का प्रयोग करेंगे हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली स्ट्रिंग को एक वास्तविक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट क्लास की पार्सफ्लोट मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं
फ़ाइल को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली स्ट्रिंग को सफलतापूर्वक एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर लिया गया है
और इसी तरह हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं और कैसे हम स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं
यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि डेटा के एक प्रकार को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं
इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से क्या तात्पर्य है और स्ट्रिंग को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए एक नियत कार्य के रूप में integerटोस्ट्रिंग और floatटोस्ट्रिंग के बारे में पढ़ें और पता लगाएं कि वे क्या करते हैं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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीमस्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद